ऐसा देखने से मालूम पड़ता है ये दुर्गा माता का ये मंदिर है और मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की--

इसमें लाइट की कलाकृति को दिखाया गया है।

ए_टी_एम के बाहर और उसके नजदीक में भी बहुत सारे लोग खड़े हुए--

न पैरों से और उसके बाहर मिट्टी लिकाला हुआ है उसके बगल में कपड़े का एक--

हर लड़की अपने पैरों में एक जूती भी पहनी हुई है लड़की को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है किसी बेडरूम में--

यहाँ के एरिया में दिखाई दे रहा है और एक सूरज की आभा दिखाई दे रही है जो इस दृश्य को काफी सूंदर बना रही है।